अच्छे कपड़े पहने कुछ हैंदेखने में बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें दो मकान दिखाई दे रहे हैं। जो देखने में ही डबल ओसन के दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गाड़ी सुधारने का गैराज है जहां पर हर प्रकार की गाड़ियां बनाई जाती हैं।

यह एक स्नेक बार की दुकान है जहां पर कई आदमीयां भूखे हुए हैं। कही --

यह एक पूल सा दिखाई दे रहा है जिसके नीचे और अगल बगल में पानी बिखरा हुआ है।